यह एक बहोत बड़े हॉल का फोटो है हॉल के नीचे बहुत सारे टाइल्से लगी हुई है।

यहां पर लाइटे लगी हुई है।

एक आदमी ने अपने हाथ में भाला रखा है।

करकटो का कलर ब्लू है यहां पर बहुत सारी रेलिंग भी है।

यहाँ पर नीचे में बहुत सारे परदे लगे हुए हैं जिसका कलर ब्लू है।

यहां पर बहुत सारी ब्रिगेडिंग भी बनाई हुई है।

सामने में एक बहोत बड़ा मछली मार्केट है।

यहां पर बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे लड़के भी हैं।

यहां पर बहुत बड़ा एक शेटर भी लगा हुआ है जिसका कलर पीला है।

यहां पर बहुत सारी छड़ हैं यहां पर बहुत सारे बांसे हैं।

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं यहां पर पोल भी हैं।

यहां पर ऊपर में बहुत बड़ा करकट का हैथी बना हुआ है।

यहां पर बहोत सारे पोल भी है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका शर्ट का कलर पिंक है।

यहां पर दरवाजा भी जिसमें बहोत बड़ा शीशा भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी छडे़ हैं।

एक बहुत बड़े दुकान का फोटो है।

यहां पर बहुत सारी केबल इयरफोंस रखी हुई है।

यहां पर बहुत बड़ा एक शादी का घर है।

यहां पर बहुत सारे फूल भी हैं यहां पर बहुत सारे झालर भी हैं।

यह सामने में एक बहुत बड़ा घर है जिसका कलर पिंक है उसके ऊपर एक टंकी भी रखा हुआ है जिसका कलर काला है।

यहां पर आदमी का टी शर्ट का कलर ब्लू और व्हाइट है।

यहां पर बोर्ड में लिख हुआ दावाखाना हेल्प लाइन केयर मेडिकल ।

यह एक बहोत बड़े रूम का फोटो है।

रूम के ऊपर बहुत सारे पंखे और बहुत सारे लाइट लगी हुई है।

यहां पर दो स्कूटी भी है।

फूलों का कलर पिंक व्हाइट हैं।

यहीं पर नीचे में बहुत सारे बाईकें हैं यहां पे सीढ़ी भी है।

यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं।

यहां पर घर का कलर पीला है यहां पर बहुत सारे दरवाजे भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर एक नदी भी है यहां पर बहोत सारे घरे भी हैं।